सामने में बेंच और चेयर भी रखा हुआ है।

मुझे ये पिक्चर में एक लंबा सा नदी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में ग्रीन कलर से पेंट किया हुआ दीवार दिखाई दे रहा है।

मुझे यह तस्वीर में सड़क दिखाई दे रहा है।

ये सारे लोग भी नजर आ रहा है।

आमने में बहोत सारा लोग भी दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बहोत सारे बिल्डिंग्स दिखाई दे रहा है।

सामने में एक सफेद कलर का गाड़ी भी खड़ा है।

मुझे इस तस्वीर में एक टेबल पर बहुत सारे थालियां रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे ये तस्वीर में नदी दिखाई दे रहा है।

सामने में एक विंड माइल भी लगा हुआ है।

पानी के ऊपर में एक लंबा सा ब्रिज भी बना हुआ है।

आस पास कई सारा पेड़ पौधा भी उगा हुआ है।

मैदान पर बहुत सारे छोटे छोटे कच्चा घर बना हुआ है।

सामने में घोड़ा और एक आदमी बैठा हुआ का स्टैचू भी दिख रहा है।

ऊपर में बहोत सारे बैलेंस भी टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने में एक टी_वी भी लगा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा पानी का तालाब दिखाई दे रहा है।

मुझे ये पिक्चर मे एक लंबा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

मुझे ये पिक्चर में एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है।

सामने में कई सारे लोग खड़ा होकर दिखाई दे रहा है।

और उनके सामने में बहुत सारे माइक्स खड़ा है।

दीवार पर स्विच बॉक्स भी लगा हुआ है।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

उन बिल्डिंग के दीवार पर येलो और ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है।

सामने में नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है।